एक ब्रिज है आगे में और जंगल बहुत ज्यादा दिख रहा है।

इसमें सामान भी रखा है और--

और यहां मे गेट भी है।

अलीगढ़ का अ लाइट जो है--

ये जो एक बिल्डिंग है ये जो ऑफिस लगता है।

और गाड़ी का गेरेश है।

और व्हाइट कलर का बॉक्स लोग भी रखा है।

कुछ कर रहे वो लोग--

और कुछ पेंटिंग भी है।

नीचे में भी रखा है।

और यहां मैं बेंच लोग भी है बहुत ज्यादा।

ये बच्चा लोग यों योगा कर रहा--

ये शीशा भी रखा है।

मल भी है और कपड़ा लोग भी है बहुत सारा--

ये आदमी दो तीन आदमी पूजा कर रहा है और--

एक लोग भी लगा हुआ है और पीछे में और पत्थर पत्थर दिखाई दे रहा है और वो भेजने वाला लोग--

और ये बोर्ड भी लिखा हुआ है इसमें--

ये बोरी लोग भी बांध के रखा है कुछ--

एक ठो आदमी काम कर रहा है और बाहर में एक ठो है।

नदी भी दिखाई दे रहा है यहां से।

ग्रास भी है ग्रीन कलर का और पेर भी है धूप भी दिखाई दे रहा है।

और लेने वाला लोग ब्लैक कपड़ा भी पहना हुआ है और बेंच में--